फ्लोर नीचे मार्बल लगी है ब्लैक कलर की बड़े-बड़े पेड़-पौधे खड़े हैं सामने चेक की --

वहाँ पेड़ लगे हुए हैं सामने बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है जो सफ़ेद कलर की एक बिल्डिंग है ।

सामने एक लड़का है जो की एक मॉल में अपना फोटो क्लिक कर रहा है जो की एक चोकोलेटी कलर का स्वेटर और टाई लगाए हुए --

और उसने एक रेड कलर की साड़ी पहने पीछे रेलिंग लगी है जो की स्टील की दिख रही है पीछे अँधेरा हो रखा है एक औरत बोरी पहन --

वो कुछ बड़ी है और कुछ पीले सी कलर की है। कुछ लाइट कलर की है। कुछ पिंक सी हरी है। साइड से कुछ सुखी पत्तियां दिख रही है।

फिर छोटे-छोटे पेड़ हैं हल्की-हल्की धुबे लगी हुई हैं साइड से कुछ उसमें --

सामने एक बड़ा सा गार्डन है चारों तरफ रेलिंग लगी हुई है पिल्लर गड़े हुए हैं और बड़े-बड़े पौधे गड़े लगे हुए हैं नीचे --

सामने एक लड़का है जो की पोज़ देते हुए रेड कलर की टी-शर्ट पहने टोपा लगाये हुए नीली जीन्स पहने हुए है ।

सामने दीवाल है जो की येलो और चोकोलेटी कलर की दीवाल पुती हुई है उसके आगे कुछ --

अ सामने एक तालाब है जो पानी से भरा हुआ है। उ पीछे ऊपर खुला आसमान है। छोटे-छोटे पौधे लगे हुए है। बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए--

रेड ऑरेंज अ वाइट कलर की फूलो से डेकोरेट है सामने दीवाल है जो पिंक कलर की है ओक नीचे --